यह तस्वीर में एक नदी दिखाई दे रही है जो बहुत गंदी ।

बहुत सारी प्रकार के हैं चीजें दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर तरीके से--

और कुछ गाड़ियां आगे चल रही हैं।

यह एक बहुत सुंदर दृश्य है और बादल भी--

ये एक बेकरी शॉप है जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत--

यह एक किराना की दुकान है जहां पे चावल आटा--

समुंद्र और आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है।